जो कि जल रहा है।

उर्दू में कुछ लिखा हुआ भी हम देख सकते हैं।

इधर पे एक एरिया है।